ये किसी कार किसी का फोटू दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर की दिखाई दे रही जिसमे दिखरा से दिल बने हुए दिखाई दे रहे कुछ नाम इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कांच लगी हुई दिखाई दे रही है गाड़ी के. ऊपर परदे लगे दिखाई दे रहे है ।

हरे कलर का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा हैं साइड में मशीन के नीचे काले कलर का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा हैं सामने कांच हमे दिखाई दे रही हैं इसमें--

किसी का ग्राउंड का फोटो दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ क्रिकेट खेलते दिखाई दे सामने के साइड में एक कुछ छे सिटींग वन की व्यवस्था बैठी हुई दिखाई दे रही हैं साइड में पीछे के एक साइड में कुछ खम्बे लगे जिसके ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही हैं पीछे कुछ--

यह किसी ए_टी_एम के बाहर का फोटो दिखाई दे रहा हैं जिसके अन्दर एक ए_टी_एम के बाहर का गेट दिखाई दे रहा हैं उसके ऊपर कुछ कांच लगी कांच के ऊपर कुछ पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है।